यह एक पार्क है पार्क के उस बगल में कुछ बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है।

यह एक रास्ता है। रास्ते में काफी भीड़ लगी है और यहां पर एक --

यह एक रास्ते का किनारा है। सामने बिल्डिंग बनी हुई है और बाहर टिन शेड लगा हुआ है।

यह एक पार्क है। पार्क के सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है जो देखने में काफी सुंदर है। पार्क में बीच में कुछ खंबे लगे हुए हैं छोटे-छोटे खंबे लगे हुए हैं उनमें लाइटें भी लगी हुई हैं।

और बिल्डिंग के पीछे भी काफी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे बनी हुई हैं।